और सामने सड़क पे दिख रही है और आजू बाजू में एक लम्बा झा--

सामने घर भी दिख रहा है और घरां के घर के ऊपर खिड़की भी दिख रही है।

ये किसी की ऑफिस दिखती है पंचायत ऑफिस दिखती है जहां पर बाहर कुर्सी पर बुड्ढे बैठे हुए--

ये कोई छोटे रेस्टोरेंट की फोटो लग रही है जहां पर बहोत सारे कोट्स और टॉवेल रखे गये हैं।

ऋतिक रोशन दिख रहा है अच्छा खासा एक दिल भी दिख रहा है ऊपर हु--

एक बड़ा सा घर दिख रहा हैज़ जहाँ पर ऊपर घर दिख रहा है और नीचे दुकान दिख रही है कुछ सामान की--

ये किसी की छोटी सी ऑफिस दिख रही है जहां पर बहोत सारा सामान रखा हुआ कुछ टेबला भी दिख रहे है।

पिक्चर डोर भी दिख रहा अंदर जाने के लिए और कुछ अंदर से कुछ लोग बाहर भी आ रहे--

मुझे किसी चप्पलों की दुकान दिख रही है जहां पे बहुत सारे चप्पल्स मिलते हैं जैसे जूते चप्पल बहुत सारे पहनने के लिए मिलते हैं जूते चप्पल।

ये किसी गार्डन की फोटो लग रही है जहां पर कुछ पुतले दिख रहे हैं जैसे हनुमान श्री राम और बजरंग बली के जैसे फोटो दिख रहे हैं।

सामने एक झाड़ भी दिख रहा है और ऊपर लाइटिंग में जो दादी के ये घर के ऊपर--

एक बैंक दिख रही है और यहां पर बैंक में बहोत सारा लेडिस आए हुए हैं।

यहाँ पर एक लड़की का गाने का टेस्टिंग किया जा रहा है शायद एक लड़की सामने पेपर में देख कर कुछ गाना गा रही है और सामने रिकॉर्डिंग की जा रही--

और जंगल-जंगल बड़े-बड़े पेड़ा दिख रहे है झाड़ा दिख रहे हैं बहुत बड़े-बड़े--

और आजूबाजू बहोत सारे पत्थर भी दिख रहे हैं और आजूबाजू झाड़ा भी दिख रहे हैं बहोत बड़े --

साइड में कोई छोटा सा घर भी दिख रा है वो साइड मे सामने एक आदमी जा रहा है।

आजु बाजू घरा दिख रहे है और खेत दिख रहे है बहोत सारे--

और घर के ऊपर एक झंडा लगाया गया है साइड में शायद एक मंदिर भी दिख रही है।

इस मंदिर के बाजू में लेटिग का खंभा भी दिख रहा है छोटा सा और ऊपर खंभे के बेहराम भी दिख रहे हैं।

झंडा लगा दिया दिख रहा--

ऊपर दरवाजे के ऊपर कुछ बोर्ड एक बोर्ड भी लगाया गया है उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ--

खाने की प्लेट दिख रहे है जहां पर खाने के प्लेट को बहोत अच्छे से डाला गया खाने की चीज़े मे जैसे ककड़ी प्याज़--

बड़े से फैक्ट्री दिख रही हैं और डाटा में चार लोग दिख रहे हैं।

और वो जो पत्थर भी दिख रहे बड़े-बड़े और सामने आजू-बाजू झाड़ा ही झाड़ा दिख रहा है।

सामने बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है जो पहाड़ के ऊपर दो चार पत्थर भी दिख रहे हैं।

एक वर्कर्स एक मशीन चला रहा है के लिए और बहोत सारे वर्कर्स साफ सफाई कर रहे हैं।

यहां पे जाले बहुत सारे दिख रहे हैं जो जाली मारते है घरा के आजू बाजू--